ये चित्र एक सर्विस स्टेशन का है यहाँ पे देख सकते है जे_ए टून ऑटो बाइक सर्विस पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं श्रवण कुमार यहाँ पे लिखा है।

सारे लोग यहां पे गाड़ी के रिपेयर पार्ट भी अंदर है दुकान के अंदर यहां पे दो लोग है एक वाटर कैन और दो गाड़ियां खड़े है रिपेयर में।

देखने में ये चित्र एक मॉल का चित्र लग रहा है हम यहा पे देख सकते सिनेपॉलिश लिखा गया है बोर्ड के ऊपर।

इस चित्र में कही सारे नारियल के पेड़ लगे है।

यहां पे देख सकते एक पोस्ट बॉक्स डब्बा है जिसका कलर ग्रीन कलर में है हम साथ में सामने गाड़ियां भी देख सकते--

हम एक ऊपर झूले पे देख सकते हैं कई सारे भगवान के अ मूर्ति लगे हुए हैं।

और गेट हम देख सकते ग्रीन कलर भी है।

ये चित्र लाइब्रेरी का चित्र यहां पे देख सकते हैं।

और यहां पे देख सकते हैं गार्डन और जो बिल्डिंग का कलर है व्हाईट और क्रीम कलर में कॉम्बिनेशन का कलर है।

देखेते यहाँ पे कई सारे लाइट लगे हुए सीलिंग के ऊपर सीलिंग सेंटर अ ए_सी भी लगा है एक होटल का चित्र है।

और चेयर के कलर ब्राउन कलर में है और एक ट्रे भी है रेड कलर का।

जे टाइल्स ब्लैक कलर के रेलिंग जो है हम यहां पे देख सकते हैं ब्लैक कलर में।

कार के सामने का एक कांच लगा है कार के रिपेयर साइड में है और साइड पे हम देख सकते हैं कार का बोनट खुला है और पीछे अ बिल्डिंग भी है जिसके अंदर लाइट लगा है।

दिखने में चित्र एक रेलवे ट्रैक के साइड पर दिखाई दे रहा है।